आ गए है शुभ-लाभ लिखा हुआ है खंबे बनी हुई है नीचे रखी हुई ऑरेंज कलर रेड कलर है नीचे बहूत सारा सामान भी रखा हुआ है।

पिक्चर मे एक फूल दिख रहा एक बान दिख रहा है जहा पर उसके बाद भी गेट बंद है अभी लोहे की है।

मशीन के बटन कुछ कर रहा है और इसकी ब्लॅक कलर की लोगो टी शर्ट पहने हुए और शूज पहन के रखे हुए पास वाला लड़का जिसमे व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।